श्री हिग हिंग-हिंग- जान बुक डिपो स्पोर्ट्स बहुत ही नामी बुक स्टोर्स जिसमे लोग--

यह एक माल है जिसमें लोग इधर से उधर जा रहे हैं और एक महिला ग्रीन कलर का सलवार पहने हुए हैं।